घर में एक बना छोटा सा मंदिर जिसमें भगवान बुद्ध की फोटो लगी हुई है उसके अगल- बगल लाइटिंग से --

ये भी पहाड़ पर दो बच्चे सड़क पर पैदल चलते हुए ढाल पर खूब सारे छोटे मोटे पेड़ पौधे घास फूस।

यह दीवार पर गोटेदार एक रावटी फूल ऊपर हाइलोजन बल्ब कमरे के चारों तरफ पुट्टी हुई है।

और बहोत सारे भोपू और बंधे हुये हैं | डीजे के निचले हिस्से पर एक जाली भी बांध रखी है।

जिनके ऊपर छोटी-छोटी घांस जम गई है बहुत सारे पेड़ो के पत्तों पतझड़ में गिर गए है।

एक और पहाड़ की चोटी पर एक --